यहाँ एक रूम है जहाँ पे आई नीड़ कॉफी लिखा--

बहुत सुन्दर नजारा है पेड़ है और गेट भी दिया है लोहे का और खंबा भी है।

से बहुत सुंदर पेड़ दिखे छोटे-छोटे पेड़ है और बड़े-बड़े पेड़ भी है बहुत सुंदर सुंदर।

आठ दस मशीन रखी हुई है यह फेक्टरी मे बल्ब है और भी बहुत कुछ है।

यहाँ पे वाइल्ड मिल है और बड़े बड़े खंबे है और बहुत शुंदर खेत है जगह है।